ऊपर में दुकान का नाम चिल्ड्रेन बुक्स है।

सामने एक मिठाई का दुकान है।

यह एक मकान का चित्र है मकान बहुत बड़ा है।

कोने में एक कैमरा है नीचे में एक व्यक्ति है।

दो बोर्ड है जिसमें एस_बी_आई लिखा है एक टॉवर है ।

और दरवाजा है। जोकि पीपल रंग का है। बहुत सारा सामान है। बहुत सारा डिब्बा है।

सामने एक रूम है छत पे बहुत सारा लाइट लगाया गया है जो सफेद रंग का है।

बहोत सारे लोग हैं और बहोत सारा जेवर है।

दीवाल है जो सफेद रंग का है।

बहोत बड़े-बड़े वृक्ष हैं जो की हरे रंग का है।

सामने एक जंगल है जहां बहोत बड़े बड़े पेड़ हैं छोटे पौधे हैं।

बगल में दो फोर बिलर है जो सफेद रंग का है।

एक बोतल है एक रुमाल है।

यह एक मकान का दृश्य है।

दो लैंप है जो सफेद रंग का है।

इसमें फूल लगे हुए हैं फूल का रंग सफेद और लाल है।

इसमें अंजुला मेंशन लिखा है नीचे दो व्यक्ति हैं।

किनारे में एक फूल है जो की गुलाब का है जो की लाल रंग का--

यहां पे बहोत सारे पत्थल भी हैं जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

उधर बहुत सारा लाइट दिख रहा है जो की सफेद रंग का है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है। यहां बहुत सारा फ्लोर है।

और एक साइकिल है एक शीशा दिख रहा है।

सामने हमें एक फूड रेस्टोरेंट दिख रहा है और हमें बहुत सारा फूड दिख रहा है।

यह एक चैनल भी दिख रहा है नीचे हमें दो बाइक दिख रहा है।

कुछ लोग कुर्सी पर बैठा है एक व्यक्ति है जो लाल रंग का कुर्ता पहना है।

अमने एक बड़ा सा रूम है जहां ऊपर में तीन पंखे लगे हुए हैं।

बहोत सारा चेयर हिल रहा है और हमें खेलने का समान भी दिख रहे है।

गेट लाल रंग का है एक चारपाई है और एक प्लग है।

उसके ऊपर खाना भी रखा गया है कटोरे में चटनी भी रखा गया है।

में है और बोर्ड है उसमें ए_आई_आर_टी लिखा है।

एक बांस हैं और पंडाल है जो कि लाल रंग का है।

आमने एक पटरी है उसके बगल में एक और पटरी है बहुत सारा पेड़ पौधा है।

एक ब्लू कलर का बस है जो चल रहा --

दीवाल में बैलून लगा है ऊपर में बहुत लाइट लगाया गया है।

एक पेज में लाल रंग से की गई है दूसरे पेज में अलग अलग रंग से की गई है।